अम-म-म सब्जी काफी ज़्याद ताजी लग रही है काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रही है।

इसमें सरकारी बच्चे जो की खेलते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके लिए ड्रेस कोड डार्क ब्लू और नेवी ब्लू है एक टीचर साइड में खड़ी हुई है जिसने रेड कलर की साड़ी पेहनी हुई है।

ये मेले मे लगी दुकान की पिच्चर है जिसमे एक लेडिस डेली वियर के क्लिप् हेअर हेअरबैंड क्लेचर नग लेती हुई नजर आ रही है।

ट्यूब्लाइट लगी हुई एक अहं केमरा लगा हुआ है एक बड़ा बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ है बहार जाने के लिए--

इधर एक भैया चेक्स कलर की और जीन्स की पेन्ट पहने हुए बैठे हुए है और यहाँ पर एक सामने बस भी खड़ी।

और उसमें कई सारे वर्कर्स खड़े हुए हैं और कुछ छत डालने में मदद कर रहें हैं कुछ समान लेके आ रहें हैं।

ये एक पार्क नजर आ रहा है जिसमे एक बच्चा फिसल पट्टी से फिसलता हुआ नजर आ रहा है और बैक साइड एक लड़की फिसलती हुई नजर आ रही है।